यह एक कुछ बन रहा है जिस में दो व्यक्ति काम कर रहे है पानी डाल रहे है।

और एक व्यक्ति नीला कलर का शर्ट पहना हुआ देख रहा है और काम भी कर रहा हैं।

और आसपास अम्म पेड़-पौधे बस नज़र आ रहे है कोई घर भी है।

और पेड़ -पौधे बहुत ज्यादा है हरे- हरे दिख रहे हैं।

माला जो शादी में पहनाते है वो वाला माला बना हुआ हैं।

वो एक्सरसाइज कर रहै है अपनी बॉडी फिटनेस के लिए कई लड़का अपनी मिरर में देख रहै है अपने आईने में --

व्यक्ति घूम रहै है कार जा री हैं।

और कपड़े कत्थे कलर के पहनाए गए हैं और राउंड किय गए हैं।

जिसमे गिट्टी सीमेंट छड़ भी है ईंटा भी है।

यह एक राजेंद्र बुक स्टॉल है।

ये भी जो भी चाहे तुम बनवाना चाहो ओ --

मंदिर मतलब कुछ बना हुआ है भगवान जी जैसा लग रहा है राम भगवान जी --